अपने मन की मन को बताने के लिए आए हैं अपने पाप को --

मख पा मध दुमपुर मखदुमपुर --

यह एक बैंक है जो लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ।

मार्केट एरिया में बहुत ही भीड़-भाड़ होते है।